ये एक बड़ा सा गार्डन है।

ये एक लावे की सामान की दुकान है यहां पे।

दरवाजे के शीट्स भी यहां पे रखे हैं बहुत सारे यहां पे शेल्फ में--

यहां पे बड़ी सी वॉल खींची गई है।